ऐसा लग रहा है कि कुछ बन रहा है एक व्यक्ति यहां पे काम कर रहे हैं।

लोहे की कुछ छोड़े हैं बालू रखे हैं नीचे दो कार भी दिखाई दे रहे हैं।

दिखाई दे रहा है घर जैसे बना हुआ पीछे बैनर लगा हुआ है कोई पोस्टर लगा हुआ है।

ये पार्क है इसमें बहुत सारे बड़े-बड़े पेड़ है।

अंदर दिखाई भी दे रही है अलग अलग रंग के डब्बे रखे हुए हैं।

वो बना हुआ है सिंबल बना हुआ है बाहर दो कार दिखाई दे रही है।

एक व्यक्ति ग्लास में कुछ दे रहा है।

छोटे छोटे फा फाइबर्स वाले गिलास रखे हुए हैं बॉटल भी पीछे दिखाई दे रहा है फ्रिज भी है।

और पंखा भी दिखाई दे रहा है हम लोग को बल्ब सफेद रंग के जल रहे हैं।

यहां सफेद रंग का सामने मकान दिखाई दे रहा है बड़ा सा।

और गिफ्ट्स के आइटम टंगे हुए दिख रहे हैं।

यहां ऊपर पिलर भी है कुछ पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं बाहर हम लोग को छोटे छोटे।

मछली की पिक्चर बनी हुई है कथई रंग का--

और भी चीजे है काले रंग का भी यहां पर फिर दिखाई दे रहा है।

बाहर लोग खड़े है पीछे भी हरे रंग का पेड़ दिखाई दे रहा है पीले रंग का तंबू लगा हुआ है।

यहाँ दीवार पे लिखा हुए हैं की दही मक्खन घी लस्सी मिलता हैं।

उधर भी एक पिंक कलर की दीवाल और कुछ मकान दिख रहे--

यहां नीचे डिब्बे दिखाई दे रहे हैं नारंगी और नीला--

मगर एक व्यक्ति बाहर खड़े हुए हैं खड़े हैं कुछ लोग इधर --

बगल में बैठे हुए अंदर कुछ सामानें भी दिखाई दे रही है।

मकान दिख रहा है कुछ बड़े बड़े सफेद सफेद लाइट्स जल रहे हैं।

लाल कलर का कुछ टेंट टाइप का लगा हुआ है छोटा सा सामने कार भी दिखाई दे रही है।

खड़ी है सब लोग सूप लिया हुआ है सूप मे अलग अलग रंग के फल्स है।

मकान टाइप का लाल रंग का पिलर है उसके सामने--

टेंपो खड़ा है इस पर कार खड़ा है कुछ लोग कार के पास है कुछ लोग टेंपो के पास है।

पेड़ भी कुछ दिखाई दे रही है रोड भी है बीच में।

पेट्रोल यहां पे लाइट्स जल रहे हैं अलग अलग कलर के।

कुर्सी के बीच में मेज लगे हुए एक लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

और पानी लग रहा है बगल में घास है जमीन पे।

यहाँ ज्यूस वगैर दिख रहे हैं कुछ अलग-अलग फ्राई आइटम ।

तार भी कुछ बिजली के दिख रहे हैं आगे दांत का।

नीले र अ नीले रंग का बोर्ड है।

नीले रंग का शटर दिख रहा है बाहर मीटर भी लगा हुआ दिख रहा है।

और खिड़कियां दिख रही है मकान में बने हुए हैं ओ एक--

आसमानी और पीले रंग बारा दिख रहा है नीचे।